जतरा लेकर जा रहे है बहुत सारे लोग बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए है।

इस चित्र में एक क्लब की फ़ोटो है जहां पर बोहोत सारी लड़कियां नाच रही हैं पीछे दीवारों पर रंग-बिरंगे लाइटे लगी हुई है।

इस चित्र में जो है एक सब्जी की दुकान की तस्वीर है जहाँं पर एक आदमी ने नीले रंग की शर्ट --

कपड़ा से सजाया गया है। बहुत लड़कियां नाच रही है। नीचे हरे रंग की मैट बिछाई --

बाहर की तरफ बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं ऊपर की तरफ खुला आसमान है आसमान का रंग जो है नीला है।

इस चित्र में जो है एक फैक्ट्री की तस्वीर है जहाँ पे बोहोत सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं।

पीछे की तरफ झाड़िया हैं।

जहां पे रात लोग ठहरे हुए हैं। एक गाड़ी खड़ी हुई है। पीछे एक ऐसी का डब्बा लगाया हुआ है।

और अपने हाथों को ऊपर उठाया हुआ है। नीचे हरे रंग की मात डाली गयी है।

पीछे की तरफ झाड़ियां है।